इस इमेज मे मुझे एक बहोत--

जिसमें कई सारे बॉक्स --

सेन्टर थे। यह देखने में बहोत--

इमेज में मुझे एक बहोत बड़ा कम्पनी दिखाई --

के और यहां पर बहोत सारे लोग--

इस इमेज़ में मुझे एक हॉस्पिटल का छोटा--

को डॉक्टर द्वारा देखा जा रहा--

है जीसमें बहोत सारी चिमानिया नजर आ--

यह देखने में बहुत सुंदर लग रहा--

थे। यह देखने मे बहोत सुंदर लग रहा--

एक फर्नीचर की दुकान दिख--

भीड़ ज्यादा बड़ी लग रही--

मुझे एक लेप दिख रही हैं।

खें यह देखने में बहोत ही ज्यादा--

इस इमेज में मुझे एक बहोत बड़ी मोबाइल --

बहोत जादा बड़ी लग रही--

है यह देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही--

इस इमेज में मुझे एक बहुत बड़ा--

है इस सैलून का नाम बाल दाढ़ी स्पा एंड --

इस इमेज में मुझे एक ट्रैक्टर की दुकान दि--